कि मैं देख सकता हूं यह एक मनुमेंट है जो कि इंडिया गेट नाम से विख्यात है।

पर एक पाइनर लगा हुआ है लिखा हुआ है पुश योरसेल्फ पास्ट देन --

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यह कोई पार्क या ग्राउंड लग रहा है जहां पर बैठने की बहुत सारी सीटें बनाई हुई है।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये एक रेस्टोरेंट लग रहा है जिसमें लिखा हुआ है अप योर स्पिरिट ।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये एक शोभा यात्रा लग रही है जिसमें की एक रथ टाइप का है।

उसके ऊपर वेलकम लिखा हुआ है और स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ जिसमें की बहुत सारे लोग खड़े हुए और बैठे भी हैं।

उसके पीछे भी एक बिल्डिंग है जो की वृक्ष से छिप गई है दिखने में काफी सुंदर लग रही है।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यह एक क्लास रूम है यह समय दिन का लग रहा है इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं एक शिक्षिका भी नजर आ रही है।

सामने कुछ बड़े पौधे भी लगे हुए हैं ग्राउंड में बहुत सारे घास उगे हुए हैं जो की दिखने में काफी अच्छा लग रहा है।

यहां बहोत सारे पौधे लगे हुए हैं यहां पर से एक जाने का रास्ता भी बनाया हुआ है ऊपर यह समय दिन का लग रहा है।

यहां सड़क पर बहुत सारी कार जा रही है बगल में एक लड़का भी है जो की रेड कलर का शर्ट पेहना हुआ है।

यहां पर अंदर से जाने के लिए रास्ता उधर भी बहुत सारे गाड़ी पार्क है यहां बहुत सारे वृक्ष भी नजर आ रहे हैं जो की हरे भरे है एकदम ।

यह दुकान का रंग जो है रेड और व्हाइट से किया गया है बगल में एक जाली सब कुछ लगा हुआ है और लिखा हुआ है शेरा इनरवियर ।